यहाँ पर एक चौक है जहाँ ढेर सारे मोटर गाड़ियां लगी हुई है और ढेर सारे बजार है।

ये बहोत ही सुन्दर जगह है जहाँ मदर मेरी को बोहोत सुंदर से सजाया गया है।

ये लड़का बीस-पच्चीस साल का जिम में कसरत करते हुए दिखाई दिया है।

और ये बहुत बड़ा-बड़ा वज़न उठा के कसरत कर रहा है।

और लोग प्रार्थना सुन रहें हैं और कर भी रहें हैं।

गैरेज में एक लोग मोटरगाडी को मरम्मत कर रहा है।

यह कमरा एक ऑफिस का है जहाँ कुछ लोगों को एक लोग मिल कर समझा रहें हैं।

जहाँ पर लोग खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे है ढेर सारे लोग यहाँ आते हैं हर साल।

ये सजावट की सामग्रियां बना रहे है जो बोहत ही सुन्दर दिख रही है ।

यह एक नृत्य का स्कूल है जहाँ पर छिक्छक छोटे-छोटे बच्चों को दोनों हाथों को उठा कर कुछ एक नृत्य की सैली सीखा रहे हैं।

और शिक्षिका कुछ बात बोल रही है बच्चे लोग बैठे हुए हैं।